इ स्कूल के मायने एक प्रतियोगिता हुई है जका के मायने पतंजलि टेस्ट नमकीन ढ़ाबा इक मायने ए तीन मारसाबन्यां है।

और चार भाया है जकी ए ओ ढ़ाबा को नमकीन ढ़ाबा को कोई कर री है कि।

और टाबर है कोई रंग रंगोली बना रिया है व मायने कैंची पड़ी है डबलयो पड़यो है।